एक ब्ल्यु कलर का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है या ये एक एटीएम (ATM) का पीक है यहा पे सामने अंदर एक मशीन रखी हुई है यहा पे अंदर एक आदमी भी दिखाई पड रहा है यहा पे बाहर गेट लगा हुआ है बाहर इसमे काँच लगा हुआ है यहा पर सामने तीन लोग खड़े हुए दिखाई पड रहे है।

सामने बिल्डिंग जैसा दिखाई पड़ रहा है ये सिल्वर रंग का दिखाई पद रहा है यहा पे पोस्टर लगा हुआ है यहा पे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है साइड मे एक लेड़ी खड़ी हुई है यहा पर बोहत सारे बास के बांबू लगे हुए है जो की ब्राउन कलर के दिखाई पड़ रहे है यहा पे रेड कलर का लगा हुआ ह।

सलून का पिक है यहाँ पे सामने एक आदमी है फोटो खींच रहा है एक सामने नीचे बैठा हुआ है वहाँ कुर्सी पे उसने मास्क लगाया हुआ है उसने ब्लू कलर का टॉवल ओढ़ रखा है यहाँ पे व्हाइट कलर की टेबल दिखाई पड़ रही है यहाँ पे कोई बोतल रखी हुई दिख रही है।

सामने एक टेबल दिखाई पड़ रही है जो की ब्राउन कलर की दिख रही है याहा पे बोहत सारे बूक रखी पड़ रही है यहा पे सामने कुर्सी पे कुछ लोग बैठे दिखाई पड़ रहे है यहापे पीछे एक आदमी दीवार के पास खड़ा हुआ है ।

यहाँ पर सामने गमला दिखाई पड रहा है यहाँ पर जमीन ग्रे कलर की दिख रही पीछे दीवार रेड कलर दिखाई पड रही है पीछे कुछ जाली लगी हुई है जो की ब्लॅक कलर मे दिखाई पड रही है सामने कुर्सी रखी है वहा पे शटर भी लगा हुआ है वहा दीवार ऑरेंज कलर की दिखाई पड रही है।

एक मेकॅनिक दिखाई पड रहा उसने व्हाइट रंग की टोपी लगा रखी है ये पीछे मशीन ग्रीन कलर की दिखाई पड रही है पीछे कुछ खंबे दिख रहा है यहाँ पे कुछ सीढ़िया भी दिखाई पड रही है।

यहाँ पे बहुत सारे झाडे भी लगी हुई है जो कि रेड कलर दिखाई पड रही सामने एक बड़ासा स्टार दिखाई पद रहा है जो पिंक कलर मे दिखाई--

आणि एक बेंच दिखाई पड रही है जो की ग्रे कलर की दिखाई पडी यहाँ पे दो बच्छे बैठे हुए पास मे एक लेडी बैठी हुई है उसने पिंक कलर की साड़ी पेहन रखी है यहाँ पे बहुत सी खिड़की दिखाई पडीरही है जो की ब्लॅक रंग की दिखती है अंदर से रोशनी आती दिखाई पड़ रही है।

आणि गोल सा मकान जैसा दिखाई पड रहा है या ब्लू रंग का दिखाई पड़ रहा है यहा पे सामने खंबे भी लगे है सामने बोहत सारे लोग दिखाई पड़ रहे है यहा पे सााइड पे कुछ लोग खड़े हुए है।

स्टेज यहा पे ब्लू रंग का पिंक मे दिखाई पड रहा है यहा पे सामने जीने पिंक कलर की दिख रहे है यहा पे पीछे ब्राउन कलर का दिखाई पड रहा है यहा व्हाइट कलर का--